एक ट्रौली खड़ी हुई दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ लोहे का जाल सा बना हुआ दिखाई --

इस तस्वीर सफ़ेद रंग की कार दिखाई दे रही है कुछ पाइप लटके हुए है कार धोने का यंत्र है।

और काले बोर्ड पे कर्मा कैफ़े बेकरी अंग्रेजी में लिखा हुआ है लकड़ी का गेट दिखाई दे रहा है और आसमान बिजली की तार और हरियाली दिखाई दे रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे है और सफेद पिलर दिखाई दे रहे है और एक छज्जा दिखाई दे रहा है लो--